जैसा कि अपन हम देख पा रहे हैं ये एक नदी नजर आ रही है और नदी के ऊपर --

पे नजर आ रही है जैसा कि अपन देख पा रहे हैं।

जैसे कि आप अपने यहां पर देख पा रहे हैं यहाँ एक छठ पूजा चल रही है|

काफी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और यंहा पे पूजा --